यहां कुछ लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

घर की दीवार की कलर सफेद रंग से रंगा हुआ है।

यहां कुछ पौधे गमले पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

यहां बहुत सारी तार दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मोजा दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारे बच्चों की खेलने की चीजें उपलब्ध है।

यहां एक कुर्सी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर किसी पूजा की है।

यहां काफी बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर दिन के समय लिया गया हैं।

यहां काफी सारे रंग-बिरंगी बैलून दिखाई दे रही है।

यहां कार दिखाई दे रहा है जो लंबा सा है।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

यहां पर डंबल भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर काफी सारे ट्रॉफी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां कुछ लोहे की खंभे दिखाई दे रही है।

यहां छत एल्बेस्टर की है।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

यहां पर काफी बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां दो चक्के दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक ताला भी दिखाई दे रही है जो लटका हुआ है।

यह दीवार का रंग सफेद से रंगा हुआ है।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

यह ईटों से बनी एक बहुत सारी पिलर दिखाई दे रही है।

यहां विभिन्न प्रकार की पाइपे दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर किसी हॉस्पिटल की है।

यहां पर एक काला रंग की बड़ी गेट दिखाई दे रही है।

यहां सीढ़ी दिखाई दे रही है।